यह दिखाई दे रहा है पेड़ के नीचे पर बैठने की जगह बनाया हुआ दिखाई दे रहा है।

बगल पर जंगल दिखाई दे रहा है।

मुझे यहां एक बैडमिंटन हॉल दिखाई दे रहा है।

लकड़ी भी रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

मुझे यहां एक बैंक दिखाई दे रहा है उसके अंदर एक लड़का खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

ये यहां एक मॉल के अंदर दिखाई दे रहा है।

यहाँ बहुत सारा सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

एक पिलो रखा हुआ दिखाई दे रहा है फोन भी रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

मुझे यहां एक रास्ता दिखाई दे रहा है।

साइड पर इलेक्ट्रिक पोल और इलेक्ट्रिक वायर दिखाई दे रहा है।

पैकिंग करके रखा हुआ भी दिखाई दे रहा है।

जू पर बनाया हुआ फेंसिंग दिखाई दे रहा है।

उसके पीछे बहुत ज्यादा जंगल दिखाई दे रहा है।

और दो लड़की चल रही दिखाई दे रहा है।

बहुत सारा पेड़ दिखाई दे रहा है।

मुझे यहां एक टीने का घर दिखाई दे रहा है।

लोग सामान ले रहा दिखाई दे रहा है।

मुझे यहां एक घर दिखाई दे रहा है घर के बाहर--

सारा बैलून से डेकोरेसन किया हुआ दिखाई दे रहा है।

के ऊपर बहुत सारा किताब भी रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

ये भी रखा हुआ दिखाई दे रहा है साइड पर स्टूल और टेबल रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

एक स्कूटी में पार्किंग किया हुआ दिखाई दे रहा है।

और भी रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

जिसके ऊपर ड्रावर बनाकर रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां ट्रांसपेरेंट ड्रॉवर बना कर रखा हुआ दिखाई दे रहा है।